ये देखिए ये पेट्रोल पम दिखाई दे रहा है जहां पर पेट्रोल भरते हैं वहां--

उन गमलों में छोटे-छोटे पौधे हैं घर के पीछे दरख तो दिख रहे हैं।

में गुलदस्ते सजे हुए हैं चारों खंभा लगा है पीछे पर्दा है और फूलों से सजा हुआ है।

ये देखिए ये किसी चीज की दुकान है दोनों तरफ दीवार पर--

एक आदमी उ आगे के साइड में खड़ा है एक आदमी इधर पीछे की साइड में खड़ा है।

देखिए ये स्कूल है तीन टीचर खड़े हुए हैं चार लड़कियां दिख रही है गुब्बारे लगे हुए हैं।

और ये जगह बहुत ही खूबसूरती से सजाई गई है लेड वगैरह भी लगे हुए हैं।

ये देखिए इस घर के पास मंदिर भी नजर आ रहा है मंदिर का झंडा भी लगा हुआ है।

नजर आ रही है ये आदमी वहीं पर खड़ा है यहाँ पर हरी-हरी छोटी-छोटी घास भी नजर आ रही है।

एक लाइन से बड़े-बड़े पलाउट भी रखे नजर आ रहे हैं।

देखिए सामने कपड़े की दुकान दिख रही है बाहर पोस्टर पर कुछ लिखा हुआ है।

देखिए यह चार पांच मंजिला बिल्डिंग नजर आ रही है।

बिल्डिंग के खिड़कियां भी नजर आ रही है सामने फैक्ट्री है गेट भी नजर आ रहा है।

दिख रहा है सामने दरवाजा है खिड़की है ए_सी लगी हुई है कबाड़ भी दिख --

ये देखिए ये तीन गुम्मद बना हुआ है नीचे लाल कार भी खड़ी हुई है --

देखिए यह दो-तीन मंजिला शायद ये बड़ी सी स्कूल दिख रही है एक और दू --

देखिए ये शाम हो रही है सड़क पर बाइक रिक्शा वाले जा रहे है यहां पर--

तार भी नजर आ रही है और लाइट वगैरा के खंभे भी लगे हुए हैं।

लोखंड के पाइप वैगरह वगैरह भी है और बहोत सारे लोग इधर उधर काम करते दिख रहे हैं।

देखिए यहां पर रेड कलर की कालीन बिछी हुई है यहां--

देखिए ये सीमेंट का लंबा सा कुछ बना हुआ हैं और ये रोड पर से साइकिल चलाता आदमी जा रहा हैं।

देखिए यहाँ पर दो मुर्गा खड़ा हुआ है एक बड़ा मुर्गा दिख रहा है एक उससे जरा सी छोटा --

देखिए यहाँ पर बाहर मूर्ति सजी हुई है बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं।

देखिए इस दुकान में बहुत सारी पेन पेंसिलें --

देखिए इस कमरे में बहुत ही बड़ा सोफा रखा हुआ है।

वो हाथ एक छोटा सा फूल सफेद पकड़े हुए दिख रहा है।

देखिए यहाँ पर घर के बाहर एक-एक घर के बाहर दिया जलता हुआ नजर आ रहा है।

आठ चेयर भी रखी हुई है पोस्टरों पर कुछ बना कुछ लिखा हुआ है।

खड़े नजर आ रहे हैं चीज के पीछे बहुत सारे दर --